दुकान के पीछे साइड बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं और इस दुकान के आसपास में कुछ घर भी दिख रहा है।

यह एक फूलों से बनाया हुआ बड़ा सा माला दिख रहा है इस माले में बहोत सारे फूल यूज किए गए हैं और इन सभी फूलों का कलर पीला ब्लू और लाल दिख रहा है।

यहां पर एक घर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां रखे हुए है।

और इसके नीचे एक ऑक्सीजन का टैंक भी रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं दुकान के सामने एक रास्ता भी है।

और इस काउंटर पे कंप्यूटर भी रखा हुआ है इस दुकान के रेक का कलर हल्का गुलाबी जैसा लग रहा है और दुकान का कलर सफेद।

इस दुकान में शेटर का यूज किया गया है और इस दुकान का कलर सफेद दिख रहा है।

इसके आजू बाजू में बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं और इस दुकान के सामने एक बाइक लगाया हुआ--

और एक दुकान के सामने बक्सा और ड्रम रखा हुआ है।

जिस पे हरे हरे घास लगे हुए हैं और पौधे लगे हुए हैं इस पहाड़ के सामने भी घने जंगल जैसा दिख रहा है।

वहाँ पर एक बड़ा सा पार्क जैसा दिख रहा है और इसके सामने कुछ घर भी दिख रहे है और घरो का कलर पीला दिख रहा है।

इस आदमी एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है।

इस रूम के कलर पीला दिख रहा है और दीवार पर बहोत सारे पोस्टर चिपकाए हुए हैं इसके सामने अल्युमिनियम का गेट लगाया हुआ है जिस पर कुछ पोस्टर भी चिपकाए--

इस घर के अंदर बहोत सारे बाइक खड़े है और एक रेड कलर का कार भी खड़ा है।

यहां पर एक बड़ा सा कंपनी जैसा लग रहा है इस कंपनी को लोहे के सीटों से बनाया गया है और इसमें बड़े बड़े मशीन भी दिख रहे हैं इन मशीनों का कलर पीला है और सफेद भी दिख रहा है।

इस घर मे बहोत सारे बोरे में और बहोत सारे डब्बे में समान रखे हुए है।

इस घर में बहुत सारे लाइट लगाए हुए हैं जोकि लाइट का कलर ब्लू और पीला दिख रहा है।